यह एक चित्र है और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि यह एक सरक है और सरकों पे लाइटें की पोस --

जिसमे की कुछ लोग काम करते हुऐ दिखाए दे रहे हैं जिसमे एक सफेद रंग की कार है। उसकी बोनट खुली हुए दिखाए दे रहा है और एक पास --

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कुछ नर्तकी डांस करते हुए दिखाई दे रहे --

चलते हुए दिखाए दे रहे हैं। उसमें एक सफेद रंग की गाड़ियां भी हैं। मॉल का नाम मोर हजाएनिक मैंट दिखाए दे रहा है और उसमें बचत --

यह एक तस्वीर है और उस तस्वीर में दिखाई दे रहा है की एक नई नवेली बसे हैं और बस के आगे एक लाल रंग की शर्ट पहने हुए --

यह एक तस्वीर है और इस तस्वीर में एक गार्डेन को दर्शाया गया है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मेला लगा हुआ दिखाए दे रहा --

जिसमे काई सारी बसे खड़ी हैं। बसों का रंग सफेद और लाल दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर फोर एयरटेल फोर जी स्मार्टफोन की --

नारियल के भी पेड़ हैं और गार्डन का रंग भी हरा भरा दिखाई दे रहा है जिसमें कि कुछ हरी भरी मिट्टी --

जेसे की सफ़ेद रंग और तीन ब्लैक रंग की बाहर खड़ी है गड़ियां और अंदर बलून भी ला --

ज आदि वगेरा दिखाई दे रहे है इसके यहाँ एक सभी टेबिल के ऊपर लाइन से सजाया हुआ है ओर यह --